ये मकान के बांस के पल्लिया लगी हुई नजर आ रही है जिसमे ऊपर पिलर भी बने हुए हैजिसमे---

पास में एक खाली दो कार्टून के ऊपर कार्टून रखे हुए नजर आ रहे हैं।